इस चित्र मे हमे दो दुकाने दिख रही हैं एक गाड़ी छोटी दिख रही हैं एक कार दिख रही हैं।

नीला आसमान दिख रहा है सफ़ेद बादल दिखाई--

ये चित्र एक चर्च का है जिस पर लोहे का बड़ा सा दरवाज़ा लगा हुआ है एक अंदर--

इस चित्र मे हमे पानी दिख रहा है हरी घास दिख रही है पानी के अंदर एक पूल दिख रहा है पूल मे एक सफ़ेद घर दिख रहा है।

गाड़ी खड़ी हुई दिख रही है पेड़ दिख रही है लोहे की रेलिंग बनी हुई है गेट के अंदर हरी चादर दिख रही है।

कमरे दिख रहे है इस पर काँच लगा हुआ है ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है।